इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में मैदान दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ बिल्डिंगे नज़र आ रही हैं।

सामने देखिएगा पेंटिंग सुंदर सी लगी हुई है और यहां पर टेबल कुर्सी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है और यहां पर एक --

और यहां पर कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक हाल दिखाई दे रहा है जहां पर कुर्सी टेबल नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा हैं।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

जहां पर अह पोस्टर लगे नजर आ रहे हैं यहां पर रानी लक्ष्मीबाई आजाद और गांधी जी के फोटो दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है।

जहां पर फेडरल बैंक ए_टी_एम लिखा नजर आ रहा है सामने एक लड़का फोटो लेता दिखाई दे रहा है

यहां पर कुछ लड़के टोपी लगाए हुए नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में यहां पर एक आइसक्रीम पार्लर दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी हुई नजर आ रही है।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

इस इमेज में सामने यहां पर विशाल सा गेट दिखाई दे रहा है बाहर यहां पर एक व्यक्ति काम करता नजर आ रहा है।